यहाँ का किताब कॉपी बहोत ही बढ़ियाँ होता है और यहाँ पे बहोत सारे विद्यार्थी जाते हैं किताब कॉपी खरीदने के लिए।

यहाँ से कोई अपने घर जाते हैं। कोई घर से आते हैं।

जिम में बहोत प्रकार के बहोत ही बड़े-बड़े मशीन रहते है| जिससे जिमर लोग जिम करते हैं।

इस नदी में तरह-तरह के मछली भी रहते हैं और इस नदी में नॉव भी चलता है।